कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं।

जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं अपने हाथों में कागजों को लेके।

डाक घर है जिसके बहार कई सारे लोग खड़े हैं।

गांव है गांव के यहाँ पर कुछ महिलायें --

वाटर पार्क का दृश्य है। यहाँ पर छतरीनुमा एक यहाँ पर शैडो टाइप बना हुआ है।

पोलिओ हाउस टाइप से कुछ बना हुआ है। वेयरहॉउस --

और ऊपर आसमान बिकुल साफ़ है दिन का ये समय है और यहां पर पीछे आके --

कई दृश्य है देखने में काफी जादा अच्छा लग रहा है।

कुछ अपना खाता खुलवाने के लिए आए हुए हैं और कुछ लोग जो है --

अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ शायद ये कई दिनों बाद जो हैं एक साथ आज बैठा है और इसे ख़ुशी हो रही है इस चीज़ की।

चर्च का दृश्य है।

मौसमी रखी हुई है काफी सारी।

ये दिवार जो है टूटी हुई है कहीं-कहीं से लेकिन ये उची है काफी इससे शायद से महल --

ये हमें सामने दिखाई दे रही है एक दुकान।

दिन का ये मौसम है। व्यक्ति हमें कोई यहा पर दिखाई दे नहीं रहा है फिलहाल।

मन को शांत करने वाला दृश्य है रात का ये समय है।